आ जिम में एक्सरसाइज करत हे।

भइसा ए एहा भइसा मन ल तलाब म लाए हेवय।

ओले और बादल मन मस्त दिखत हे।

पेड़ पौधे लगे हुए है बहुत सारे जंग --

फिसल पट्टी लगी हुई है ए मा --